देखने से काफी अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और ये सुंदर लग रहा है सोना के तरह लग रहा है काफी अच्छा ये मंदिर डेकोरेट किया हुआ है काफी अच्छे लग रहे हैं मंदिर।

बोहोत सारे लोग पूजा करने के लिये आए है काफी अच्छा लग रहा है मंदिर थेंकयू धन्यवाद।

बिस्कुट - इसकूट भी रख मिलता है अच्छे-अच्छे काफी अच्छा है यहाँ सुधा का भी दूध मिलता है काफी अच्छे-अच्छे तरह का दूध अ उम ठंडा वगेरा भी मिलता है काफी अच्छे ठन्डे वगेरे।

अलग-अलग नहाते है अच्छे से मुझे थैंक्यू --

काफी अच्छा लग रहा है है बहुत सारे घर है बहुत अच्छा लग रहा है थेंक यू धन्यवाद।

रात का समय है काफी अच्छा लग रहा है दुकान पे चल रहा है थैंक्यू धन्यवाद।

ये एक तालाब है काफी अच्छा लग रहा है बहुत सारे पेड़-पोधे भी है काफी अच्छा लग रहा है साइड मे एक आदमी बेठा हुआ है।

लग रहा है पेड़-पोधे भी काफी सारे तालाब बहुत सारे हैं लगे --

ये चाय का एक दुकान है --

क्रिकेट मैच हो रहा है काफी अच्छा लग रहा है यहां बहुत सारे लोग आए है क्रिकेट खेलने

यह शादी का माहौल है काफी अच्छा लग रहा है एक लग रहा है।